ऐसे इमेज में यहां पर फूलों के बास्केट दिख रहे हैं और यहां पर हार भी नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है और कुछ लड़के कसरत कर रहे हैं।

ऐसा इमेज में यहां पर बास्केट में मछली दिखाई दे रही है और कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।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

यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है सामने एक अंग्रेज व्यक्ति नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक ज्वेलरी की दुकान दिखाई दे रही है और अंदर काफी सारे गहने नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है और बड़ा सा पुल भी नज़र आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दे रही है और एक कांच की खिड़की भी नजर आ रही है।

ऐसे इमेज में यहां पर बास्केट में कुछ आलू दिखाई दे रहे हैं जो छोटे बड़े नजर रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक कमरा रूम दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सियां लगी हुई नजर रही है।

इस इमेज में यहां पर एक गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारा सामान नजर आ रहा है।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

इस इमेज मे यहां पर बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है और बड़े पोस्टर टंगे नज़र आ रहे है।

इस इमेज में यहां पर कुछ पक्षी पानी में दिख रहे हैं और पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर किताबों की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर ढेर सारी पुस्तके नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति बाहर खड़ा नजर आ रहा है।

ऐसे इमेज में यहां पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक गैरेज दिखाई दे रहा है जहां पर बाइक खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और अंदर साइकिल पे लड़का जाता नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक मेला दिखाई दे रहा है जहां पर मिकी माउस भी नज़र आ रहा है।

इस इमेज में सामने फलों की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर केले अंगूर अनार दिख नज़र आ रहे हैं।